इतना सुंदर सजा हुआ है उसमें पर्दे भी लगे हुए हैं।

शायद बगल में सॉस है। कुछ खाने का है जो कि चटनी के साथ--

यह एक दुकान है जो कि मुझे लग रहा है सोने चांदी की दुकान है।

कुछ आदमी बैठ हुए दिख रहे है ऐसा लग रहा है जैसे ये फूलों की लड़ी को--

ऐसा लग रहा है यह कोई होटल हो यहां होटल का काम होता हो यहां पे यात्री रहते हैं।

यहां पर मुझे दराज भी दिख रहा है।

यैसा लग रहा है जैसे कि यहां पे जिम हो। यहां पे लोग --

यह एक मेडिकल है यहां पे दवाईयां मिलती हैं यह दुकानदार हैं।

यहां पे बहोत सारे बिल्डिंग दिख रहे हैं।

बेड पे गद्दे लगे हुए हैं सामने कितनी सारी लाइटें ल--

फूल बेच रहा है कितने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल हैं पीले फूल लाल फूल हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं।

यहां पे माँ दुर्गा की प्रतिमा रखी हुई है ऐसा लग रहा है यह दुर्गा पूजा हुआ था।